सामने कुछ सीढ़ियां हैं और यहां पर कुछ--

हुए हैं सामने कुछ सीढ़ियां है और सामने कुछ लकड़ियां रखी गई है।

यहां पर सामने एक कपड़ों की दुकान है।

यहां पर कुछ बेंच और कुछ कुर्सियां लगाई गई हैं और सामने एक टी_वी लगा हुआ है।

दीवार पर एक ए_सी लगाया गया है और यहां पर एक तस्वीर लगाई गई है।

और यहां पर कुछ बोर्ड लगे हुए है सामने कुछ कुर्सियां और कुछ बेंच रखे गए है।

और दीवार पर कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं सामने कुछ--

यहां पर सामने एक कमरा है और यहां पर एक बेड रखा गया है।

लगाए गए हैं यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर सामने एक बैंक है।

यहां पर सामने एक मूर्ति है और सामने एक गेट --